ये मंदिर है मंदिर मे दो इधर-दो इधर रास्ते है एक बीच का रास्ता है और पास मे एक ग्रीन कलर का घर है और एक ईटों का अलग घर दिख रहा है और इधर पेड़ पोदहे दिख रहे है पेड़ दिख रहे हैं।

पास में एक घर दिख रहा है तार दिख रहे है खंभा दिख रहा है है धूप दिख रही है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं जमीन दिख रही है।

बिजली के तार दिख रहें हैं एक आदमी बाइक पे सामान ले के जा रिया है बहुत से आदमी पैदल जा रहें हैं।

ये रोड है सामने बाउंड्री दिख रही है येलो कलर की और दिख रही है खम्बा दिख रहा है आसमान दिख रहा है ज़मीन दिख रही है. जमीन पर छोटे छोटे डिजाईन दिख रहे है।